सामने कुछ व्हाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही है।

सामने ही ब्रेजा कार व्हाइट कलर की खड़ी हुई है।

कुछ व्यक्ति ने यहां पर मास्क लाया लगाया हुआ है।

पीछे की ओर व्हाइट कलर हमें--